इस फोटो में मुझे गौतम दिखाई दे रहा है।

ये फोटो में मुझे तालाब दिखाई दे रहा है।

मैदान दिखाई दे रहा है।